हमारे यहां पर शादी विवाह के ऑर्डर भी लिए जाते हैं बैनर पे लिखा है और यहां दादी अम्मा भी बहुत बैठी हुई हैं और यहां--

वो एक ट्रॉली में एक आदमी खड़ा भी है और उधर एक फौजी भी खड़े हैं और एक लड़का चश्मा लगा के खड़ा बहुत सारी औरते भी और एक --